और एक बोर्ड लगा हुआ है वेंडर लॉस्ट गेस्ट हाउस कैमल सफारी कैफे --

इसके आस नंबर प्लेट लगी हुई है पीले कलर की और बस का नेम लिखा हुआ है समीर--

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके आगे दीवार बनी हुई है।

यहां पे काफी लाइटें भी जल रही हैं इस शोरूम में।

कुछ सामान पड़ा हुआ है उसके आसपास में थोड़ा थोड़ा पौधे दिखाई दे रहे हैं।

लाल कलर का घाघरा और आधा यहां पे ब्लू कलर का घाघरा दिखाई दे रहा है।

और लाल कलर की कुछ साइकिले हैं और कुछ छोटे साइकिले भी है बच्चों के लिए--

और गमलों के पौधे भी लगे हुए हैं एक लड़का उसे देखकर रेख कर रहा है आदमी बैठा--

ये एक पंतजलि चिकित्सालय स्टोर है और--